और एक बहुत बड़ा खम्भा भी नज़र आ रहा है और एक छोटा सा पेड़ भी नज़र आ रहा है।

सीन में भगवान नज़र आ रहे है।

और ऊपर की तरफ एक पहाड़ भी नजर आ रहा है।